यह मछली की दुकान है। यहाँ पे बहुत सारा मछली है। छोटा भी मछली है बड़ा भी मछली है।

रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। जेंट्स हैं लेडीज हैं छोटा-बड़ा बच्चा सब है। पेड़-पौधा बहुत सारे हैं। मंदिर में बहुत भीड़ लगा हुआ है।

यह रूम है। रूम बहुत सुंदर है।